ये एक बिल्डिंग का कंपाउंड है जहाँ पे बहोत सारे लोग खड़े हैं इस बिल्डिंग के बीच मे एक पानी का झरना भी बनाया गया है यहाँ पर बहोत सारे लोग और बच्चे खड़े हैं।

ये एक स्टेशन है जहा पे ये दो तीन दुकान ह एक लाल और साधा रंग का दुकान है और एक पूरा लाल रंग का एक कमरा है जिसमें जाली दिया हुआ एक खिरकी है।

ये एक बच्चों का ड्राइंग क्लास रूम है जहाँ बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं कुछ बच्चे कलर कर रहे हैं कुछ बच्चे आर्ट एन्ड क्राफ्ट कर रहे हैं कुछ बच्चे पेपर से कुछ बना रहे हैं।

दुकान के डेस्क पे एक कैलकुलेटर पेन कैंची कॉपी और न्यूज़ पेपर रखा गया है यहाँ पे एक ड्रॉयर भी है।

उनकी तस्वीरें लिए जा रही है उधर जो स्टेज पे सजावत की गयी है उ से सजाए गए हैं ।